कार के पीछे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ दो हैंगर में लोअर भी टंगे हुए है एक ब्लैक एक ग्रीन कलर का यहाँ काफी सारे टॉप्स भी रखे है जो काफी कलरफुल लग रहे है।

जिसमे कुछ कोल्ड्रिंग की बॉटल रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक वेट मशीन भी रखी हुई है।